नमस्कार दोस्तों मल्टिपल प्लॉट्स के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप यह करने में सक्षम होंगे अधिचित्रित मल्टिपल प्लॉट्स को बनाएँ
फिगर कमांड का उपयोग लेजेंड कमांड का उपयोग प्लॉट्स के बीच स्विच करना और उन पर कुछ कार्य करना जैसे कि प्लॉट्स को सेव करना
सब प्लॉट्स को बनाना और उनके बीच स्विच करना
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम सुझाव देते हैं कि आप यूजिंग प्लॉट इंटरएक्टिवली एम्बेलिशिंग आ प्लॉट और सेविंग प्लॉट्स ट्यूटोरियल पूरा करें
पाइलैब के साथ इपिथॉन शुरू करें टर्मिनल पर टाइप करें इपिथॉन स्पेस हाइफेन पाइलैब चलिए अपने प्लॉट के लिए पहले पॉइंट्स का सेट बनाएँ हम इस के लिए लिनस्पेस नामक कमांड का उपयोग करेंगे अतः टाइप करें एक्स इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट में 05010 लिनस्पेस कमांड 0 और 50 सहित बीच के अंतराल में 10 प्वॉइंट्स बनाता है हम इन वेल्यूस को एक्स नामक वेरिएबल को असाइन करेंगे
हम इन पॉइंट्स का उपयोग कर एक सरल साइन प्लाट बनाते हैं अतः टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा सिन ओएफ एक्स और एंटर दबाएँ थोडा रुकिए क्या यह अच्छा साइन प्लॉट है
क्या एक साइन प्लॉट वास्तव में ऐसा दिखता है
हमें पता है कि साइन प्लॉट एक समतल वक्र है
है या नहीं160
वास्तव में इस का कारण क्या है
लिनस्पेस पर एक छोटी जांच दर्शाती है कि वक्र को समतल होने की अवस्था के लिए 0 और 50 के बीच हमने बड़े अंतराल के काफी कम प्वॉइंट्स चुने हैं
यह यह भी दर्शाता है कि प्लॉट कमांड वास्तव में एक्स और सिन द्वारा दिए गए प्वॉइंट्स को प्लॉट करता है यह खुद से विश्लेषी फंक्शन को प्लॉट नहीं करता है बल्कि विश्लेषी फंक्शन्स द्वारा दिए गए प्वॉइंट्स को प्लॉट करता है
अतः अब 0 से 100 के बीच 500 प्वॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए फिर से लिनस्पेस का उपयोग करें और सिने प्लॉट बनाएँ
अब हम एक समतल वक्र का सिने प्लॉट देखते हैं
अतः टाइप करें य इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट्स में 050500
फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में य कॉमा सिन ओएफ यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो प्लॉट हैं जो एक दूसरे पर अधिचित्रित है
पाइलैब में डिफ़ॉल्ट रूप से सभी प्लॉट अधिचित्रित हैं
क्योंकि हमारे पास एक दूसरे पर अधिचित्रित दो प्लॉट्स हैं इनमें क्या अंतर है यह दर्शाने के लिए हमारे पास एक तरीका होना चाहिए
यह लीजेंड्स का उपयोग करके पूरा हो सकता है
हमारे लिए लेजेंड कमांड समानरूप से कार्य करता है
लेजेंड कमांड पैरामीटर्स की एक सूची लेता है जहाँ प्रत्येक पैरामीटर एक टेक्स्ट है जो प्लॉट को उसके क्रम अनुसार दर्शाता है
टर्मिनल पर टाइप करे लेजेंड ब्रैकेट्स में तथा स्क़्वेर ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स में सिन ओएफ एक्स कॉमा एक और सिंगल कोट्स में सिन ओएफ य
अब हम लीजेंड्स को प्लॉट एरिया पर संबंधी सिने और कोसाइन प्लॉट में देख सकते हैं
अब हमने काफी सीखा है इसलिए हमें एक अभ्यास करना चाहिए
यहाँ विडियो रोकें निम्नलिखित अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएं
5 से 5 के बीच अधिचित्रित दो प्लॉट्स बनाएँ जिसमें पहला प्लॉट य इस इक्वल टो 4इंटो एक्स स्क्वेयर्ड एक पाराबोला हो और दूसरा य इस इक्वाल्टो 2एक्स प्लस 3 एक सीधी रेखा है
प्लॉट्स के बीच अंतर बताने के लिए रंग का उपयोग करें और प्रत्येक प्लाट क्या कर रहा है सुचित करने के लिए लीजेंड्स का उपयोग करें
उपाय के लिए टर्मिनल पर जाए हम निम्न कमांड्स का उपयोग करके अलग अलग रंग में दो प्लॉट्स को प्राप्त कर सकते हैं
अतः टाइप करें एक्स इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट्स में 5 कॉमा 5 कॉमा 100 फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा 4 स्टार ब्रैकेट्स में एक्स स्टार xकॉमा ब सिंगल काउट्स में फिर टाइप करें प्लॉट एक्स कॉमा ब्रैकेट्स में 2 स्टार एक्स प्लस 3कॉमा सिंगल काउट्स में जी
अब हम लेजेंड कमांड इस तरह से उपयोग कर सकते हैं
लेजेंड ब्रॅकेट में स्क्वेर ब्रॅकेट में सिंगल क्वोट्स मिएन parabolaकॉमा सिंगल क्वोट्स में स्ट्रेट लाइन
और आप प्लाट के समीकरण भी दे सकते हैं जैसे आप टाइप कर सकते हैं लेजेंड ब्रॅकेट में स्क्वेर ब्रॅकेट में य 4 इंटो एक्स स्क्वेयर्ड कॉमा य इस इक्वल टो 2एक्स प्लस 3
अब हम जानते हैं कि अनेक प्लॉट्स कैसे बनाने हैं लीजेंड्स के उपयोग से हम प्लॉट तथा सम्बंधित फंक्शन को चिन्हित कर सकते है
पर हम अपने बनाये हुए प्लॉट्स पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं
उन दोनों के बीच स्विच करें कुछ कार्य करें या उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेबलिंग करें
हम देखेगे कि इसे कैसे पूरा करें
पर आगे जाने से पूर्व स्क्रीन को क्लियर करेंगे
अतः टाइप करें सीएलएफ फिर क्लोजिंग ब्रैकेट्स
व्यक्तिगत प्लॉट्स पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए हम फिगर कमांड का उपयोग करते है
तो उस के लिए आप टर्मिनल में टाइप करें
एक्स इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट्स के भीतर 0 कॉमा 50500
टाइप करें फिगर ब्रैकेट्स में 1 टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स सिन कॉमा ब सिंगल क्वोट्स में ब और फिगर ब्रैकेट्स में 2
फिर टाइप करें फिगर ब्रैकेट्स में 2 टाइप करें प्लाट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा कॉस कॉमा सिंगल कोट्स में जी अब हमारे पास दो प्लॉट्स है दो अलग फिगर्स में एक साइन प्लाट और एक कोसाइन प्लाट
फिगर कमांड इन्टिजर को तर्कargument के रुप में लेता है जोकि प्लाट का क्रमांक है
यह संबधित या अनुरूपी प्लाट का चयन करता है
अब जो भी प्लॉट कमांड हम इसके बाद रन करेंगे वह चुनित प्लाट पर लागू होंगे
फिगर 1 साइन प्लाट है और फिगर 2 कोसाइन प्लाट है
उदाहरण के लिए हम हर एक प्लाट अलग से सेव कर सकते हैं
हमने अपने पहले प्लाट का शीर्षक सिन दिया है जो दुसरे प्लाट को नहीं दिया
अतः टर्मिनल में टाइप करें सेवफिग ब्रैकेट्स में सिंगल कोट्स में स्लैश होम स्लैश यूजर स्लैश कोसाइन डॉट पंग फिर फिगर 1 ब्रैकेट्स में टाइटल और सिंगल कोट्स में सिन
ब्रैकेट्स में सेवफिग और सिंगल कोट्स में स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश सिने डॉट पंग कोसाइन कमांड में भी आप फॉसी के बदले होम यूजर का उपयोग कर सकते हैं
हम एक और अभ्यास का प्रयास करते हैं
यहाँ विडियो रोकें निम्नलिखित अभ्यास की कोशिश करें और विडियो फिर से चलाएं
एक लाइन ड्रा करें जो य इस इक्वल टो एक्स के रूप में एक फिगर हो और दूसरी लाइन य इस इक्वल टो 2एक्स प्लस 3 के रूप में
पहली फिगर पर वापस जाएं एक्स और य इंटरसेप्ट्स एनोटेट करें
दुसरे फिगर पर वापस जाएं और उसके एक्स और य इंटरसेप्ट्स एनोटेट करें
प्रत्येक को सेव करें
अब उपाय के लिए टर्मिनल में स्विच करें
इस समस्या को हल करने के लिए पहले फिगर कमांड का उपयोग करके पहला फिगर बनाइए
इससे पहले सीएलएफ कमांड रन करके सुनिश्चित कीजिये कि सभी पिछले प्लॉट्स क्लिअर किए हैं
टाइप करें सीएलएफ टाइप करें फिगर 1 टाइप करें एक्स इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट्स में 5 कॉमा 5 कॉमा 500
फिर प्लॉट एक्स कॉमा एक्स
दूसरा प्लोटिंग एरिया बनाने के लिए फिगर कमांड का उपयोग करें और फिगर प्लाट करें
टाइप करें फिगर 2 टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा ब्रैकेट्स में 2 स्टार एक्स प्लस 3
फिगर कमांड का प्रयोग करके फिगर्स के बीच स्विच कर सकते हैं
अतः हम फिगर 1 के लिए स्विच करते हैं
हमें एक्स और य के इन्तेर्सप्ट्स को ऐनोटेट करने के लिए कहा गया है लेकिन यहाँ फिगर 1 ओरिजिन से गुजरता है इस का मतलब हमें ओरिजिन को ऐनोटेट करना होगा हम दूसरे फिगर के इंटरसेप्ट्स को ऐनोटेट करेंगे और उन्हें निम्न रूप में सेव करेंगे अतः हम टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं फिगर 1 फिर टाइप करें एनोटेट ब्रैकेट में ओरिजिन कॉमा क्सी इस इक्वल टो 0 पॉइंट 0 कॉमा 0 पॉइंट 0
फिर फिगर 2 अतः फिगर 2 एनोटेट ब्रैकेट में एक्स हाइफेन इंटरसेप्ट कॉमा क्सी इस इक्वल टो ब्रैकेट में 0 कॉमा 3
टाइप करें एनोटेट य हाइफेन इंटरसेप्ट कॉमा क्सी इस इक्वल टो ब्रैकेट में 0 कॉमा 15 फिगर सेव करने के लिए टाइप करें सेवफिग ब्रैकेट में स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश प्लॉट2 डॉट पंग
फिर फिगर 1 और उसे सेव करने के लिए टाइप करें सेवफिग ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश प्लॉट1 डॉट पंग
कई बार हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ हम दो प्लॉट्स की तुलना करना चाहते हैं ऐसे मामलों में उसी प्लॉटिंग एरिया में दोनों प्लॉट्स को ड्रा करना चाहते हैं
यह ऐसी स्थिति है कि दो प्लॉट्स के पास विभिन्न नियमित एक्सेस है इसका मतलब है हम अधिचित्रित प्लॉट्स ड्रा नहीं कर सकते हैं
इस स्थिति में हम सब प्लॉट्स ड्रा कर सकते हैं
यह पूर्ण करने के लिए सबप्लॉट कमांड का उपयोग करें
अतः टाइप करें सबप्लॉट ब्रैकेट्स में 2 कॉमा 1 कॉमा 1
हम देख सकते हैं कि सबप्लॉट कमांड तीन आर्गुमेंट्स लेता हैं पहला सबप्लॉट्स की रोस की संख्या जो बनाई जानी चाहिए
इस केस में हमारे पास 2 पहले आर्गुमेंट के रूप में हैयह 2 सबप्लॉट्स के लिए प्लॉटिंग एरिया को क्षैतिज विभाजित करता है
दूसरा आर्गुमेंट सब प्लॉट्स के कॉलम की संख्या निश्चित करता है जो बनाये जाने चाहिए
हमने आर्गुमेंट के रूप में 1 पारित किया है अतः प्लॉटिंग एरिया लंबवत विभाजित नहीं होगा और अंतिम आर्गुमेंट क्रमानुसार कौन सा सबप्लॉट बनाया जाना चाहिए यह निर्दिष्ट करता है
इस केस में हमने आर्गुमेंट के रूप में 1 पारित किया हैं इसलिए पहला सबप्लॉट जोकि ऊपरी हिस्सा है बन चुका है
यदि हम सबप्लॉट कमांड निष्पादित करें आप टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं सबप्लॉट 2 कॉमा 1 कॉमा2 निचली सबप्लॉट अब बनाई गई हैं
हम प्लॉट कमांड का उपयोग करके सबप्लॉट एरिया में प्रत्येक प्लॉट को बना सकते हैं
अतः टर्मिनल पर टाइप करें xlinspaceब्रैकेट में 0 कॉमा 50 कॉमा 500
टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट में एक्स कॉमा कॉस टाइप करें सबप्लॉट 2 कॉमा 1 कॉमा 1
टाइप करें य इस इक्वल टो लिनस्पेस 0 कॉमा 5 कॉमा 100
टाइप करें प्लॉट य कॉमा य स्टार स्टार 2
यह प्रत्येक सबप्लॉट एरिया में दो प्लॉट बनाता है
ऊपर के सबप्लॉट में पाराबोला है और निचले सबप्लॉट में कोसाइन वक्र है
जैसे कि हमने देखा सबप्लॉट कमांड का उपयोग कर हम सबप्लॉट के बीच जा सकते हैं लेकिन हमें वही आर्गुनेंट्स का उपयोग करना होगा जो हमने सबप्लॉट बनाने के लिए किए थे अन्यथा पिछला सबप्लॉट उस जगह से स्वतः ही डिलीट हो जायेगा
यह दोनों सबप्लॉट से स्पष्ट है कि दोनों में अलग अलग नियमित एक्सेस हैं
कोसाइन प्लाट के लिए x एक्सिस 0 से 100 तक और y एक्सिस 0 टो 1 बदलता है जबकि पैराबोलिक प्लॉट के लिए x एक्सिस 0 टो 10 तक तथाy axis 0 से 100 तक बदलता है
एक और अभ्यास का प्रयास करते हैं
वीडियो को यहां रोकें और निम्न अभ्यास का प्रयास करें और वीडियो पुनः शुरू करें
हम जानते हैं कि दबावआयतन और तापमान समीकरण पीवी नर्त द्वारा निर्मित है जहाँ एनआर एक कांस्टेंट है
हम मानते हैं कि एनआर 001 joulesकेल्विन और ट 200क
व की रेंज 21सीसी से 100सीसी तक हो सकती है
सबप्लॉट्स के रूप में दो अलग प्लॉट्स ड्रा करें पहला प्रेशर वर्सस वोल्यूम प्लॉट तथा अन्य प्रेशर वर्सस टेम्परेचर प्लॉट
उपाय के लिए टर्मिनल पर जाएँ
शुरू में हमने आयतन की रेंज दी जिसका उपयोग करके हम वेरिएबल व परिभाषित कर सकते हैं
व इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट में 21 कॉमा 100 कॉमा 500
अब हम पहला सब प्लॉट बना सकते हैं तथा इस व का उपयोग करके प्रेशर वर्सस वोल्यूम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं
हम जानते हैं कि नर्त कॉंस्टेंट है जो 20 के समान है क्योंकि एनआर 001 जूल्स पेर केल्विन और ट 200 केल्विन अतः टर्मिनल पर टाइप करें सबप्लॉट 2 कॉमा 1 कॉमा 1
फिर प्लॉट व कॉमा 2 पॉइंट 0 स्लैश व
अब हम दूसरा सबप्लॉट बना सकते हैं तथा निम्न तरह से प्रेशर वर्सस टेम्परेचर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं
सबप्लॉट 2 कॉमा 1 कॉमा 2 सबप्लॉट 2 कॉमा 1 कॉमा 2 फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में 200 कॉमा 20 स्लैश व

हमें अब एक एरर मिली हैं जो कह रही है एक्स तथा य डायमेंशन्स मैच नहीं हो रहे हैं
क्योंकि लिनस्पेस द्वारा दिए हुए वेल्यूस के सेट को व समाविष्ट करता हैं और इसलिए 20 स्लैश व जोकि दबाव है वह भी वेल्यूस के एक सेट को समाविष्ट करता हैं
बट थे फर्स्ट आर्गुमेंट टो थे प्लॉट कमांड इस आ सिंगल वैल्यू
लेकिन प्लॉट कमांड का पहला आर्गुमेंट एक ही वेल्यू है
अतः इस डेटा को प्लॉट करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्वॉइंट्स बनाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ समान वेल्यू के साथ तापमान के लिए दबाव या आयतन डेटा हैं
इसलिए हम टर्मिनल पर ट इस इक्वल टो लिनस्पेस विथिन ब्रैकेट्स 200 कॉमा 200 कॉमा 500 टाइप करके यह करते हैं
अब हमारे पास प्रत्येक ट में वैल्यू 200 केल्विन के साथ 500 वैल्यूस है
यह डेटा प्लॉट करते हुए हमें आवश्यक प्लॉट मिलता है
अतः इसके लिए हम टाइप कर सकते हैं प्लॉट ब्रैकेट्स में ट कॉमा 2 पॉइंट 0 स्लैश व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
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा अधिचित्रित मल्टिपल प्लॉट ड्रॉ करना
फिगर कमांड का उपयोग करना
लेजेंड कमांड का उपयोग करना
प्लॉट्स के बीच जाना और प्लॉट्स को सेव करने की तरह प्रत्येक पर कुछ कार्य करना
उनके बीच में जाने लिए सबप्लॉट्स बनाएँ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
एक प्लॉट को अलग अलग पाने के लिए कौनसी कमांड का उपयोग होता है
निम्न में से कौन सीसही है
subplotnumrowsकॉमा numcolsकॉमा प्लोटनम subplotnumrowsकॉमा नमकॉल्स subplotnumcolsकॉमा नमरोज अब हम उत्तर देखेंगे
figure कमांड से एक प्लाट को अलग अलग पाया जा सकता है
सबप्लॉट कमांड तीन आर्गुमेंट्स लेता है जो हैं प्लॉट की संख्या और कॉलम की संख्या के बाद रोस की संख्या अतः पहला ऑप्शन सही है
जो subplotnumrowsकोमा numcolsप्लोटनम है
आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा